ये भी कोई फूल है यहाँ दिखाई दे रहा है ये तो अभी फुलाया नहीं बस ऐसे ही फूल रहता है ये फूल आज-कल कहीं-कहीं मिलता है देखने का--